यहाँ पर कपरा का दुकान है एक चुइदा झूल रहा है आमार ब्रदर्स नाम का कपरा का दुकान दिखाई दे रहा है इधर में ।

इधर में राहुल चाय वाला शटर और चाय कॉफ़ी वाला दूकान है और दोनों आदमी खड़ा हुआ है और जैसा दिखाई दे रहा है फुटपाथ --

पीछे लाल जैसा है और पेड़ के निचे ट्रेक्टर खड़ा है --

के अंदर है आ साइड में वाला कुछ हो रहा है जो बैरिकेट देता है वो वाला है |

यहाँ एक डी.जे क सेट है। डी.जे के सेट का नाम है शर्मा औडियो इधर बहुत सारा है लाइट जो है डी.जे लाइट जैसा है। यहाँ साइड में एक बारी हैअ चार गो बॉक्स है बहुत सारा है।

और दू गो का पेंड़ है।

पेड़ में एक रास्ता दिखाई दे रहा है। बाजू में--

नाम का एसएस नाम ये बेट है ये --

यहाँ पर एक पुरुनामे का स्टेशन है। स्टेशन के अन्दर कुछ लोग बेठे हुए हैं। सामने मॉल गाड़ी का लाइन है। ऊपर खुला असमान है। लैंप पोस्ट है। सामने इधर में स्टेशन पर काउंटर है। टिकट काउंटर है।

ए यह खुला असमान है। पीछे पेड़ में है सामने रोड जैसा कुछ बना हुआ है।